पब्लिक भी यहाँ पर दिखाई दे दूर-दूर तक बाजार लगा हुआ है पीछे बहुत सारा जंगल सा टाइप का दिख रहा है बहोत दूर मे लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है मार्केट का।

मह मेला मेला लगा हुआ दिख रहा है इसमें बहोत बड़े-बड़े झूले लगे हुए है बहोत सारे झूले लगे हुए दिख रहे है बहोत सारे प्रोग्राम दुकानें भी लगी हुई दिख रही है बहोत सारी पब्लिक भी दिख रही है भीड़ भी यहाँ पर बहोत सारी दिख है मनोरंजन आनंद उठा रहे है।